यहां पर दो तीन औरतें भी खड़ी हुई हैं।

दो बाहर डमी भी दिख रही हैं।

यहां चित्र बने एक बड़े कारखाने का--

इस चित्र में हमें एक बड़ासा बंगला दिखाई दे रहा हैं।

कुछ लाइटे अंदर जगमगा रही हैं और कुछ साड़ियां कपड़े डमी --

जिसको व्हाइट शर्ट पहनी हुई है।

एक कूलर एक चेयर भी दिख रही है।

यह चित्र एक घर का लग रहा है।

फूलों से भरे हुए गुलदस्ते कुछ रंग-बिरंगी कटोरियां औंधी पड़ी हुई --

एक होटल की लग रही है।

और दो चटनियां भी दिख रही है।

बंगले की लग रही है जहां पर बहुत सारे पेड़ घास--

वहां बोर्ड लाल कलर का लग रहा है।